यह एक भगवान शिव का मंदिर है यह मंदिर मे बहोत सारे आदमी पूजा करने आते हैं।

यह एक गुफा है यह गुफा में मंदिर है यह मंदिर में बहुत सारे यात पूजा करने आते हैं यहाँ पर बहुत ही खुबसुरत पथल है यह पथल में बहुत सारे ही आदमी आये हैं इसपे बेठे हुए हैं ।

यह एक बाइक का शोरूम है बहुत ही खूबसूरत शोरूम है यह शोरूम में तीनगो गाड़ी है और यहाँ बहुत सारे ही कुर्सी है टेबल है बहुत सारे बाईक का बैनर लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत शोरूम है यह शोरूम में बहुत ही गाड़ी भी बे --